ये एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम चन्द्रवर्ती हॉस्पिटल है। यहाँ पे डॉक्टर मुकेश त्यागी डॉक्टर हैं। यह शिशु एंव बाल रोगो का विशेषज्ञ है।

यह रेस्टोरेंट है यह रेस्टोरेंट में बहुत सारे आदमी खाना खाने के लिए आए हुए है यहाँ पे एक टेबल में मछली और चावल चटनी दाल रखा हुआ है।